यह एक दुकान है। यह पार्लर है। सामने लिखा हुआ है बड़े-बड़े अक्षरो में।

यह झरनों के बीचो बीच पानी ऊपर से नीचे की और गिर रहे हैं।

हेयर सलून है। इस सलून का नाम न्यू ताज हेयर सलून है।

बनाया गया। उसपे बांस द्वारा चढ़ते है और सामने एक लाईट भी लगा हुआ --

और आसमान भी रंग बिरंगा नजर आ रहे हैं।

और बगल में बहोत सारा पानी भी स्टॉक है। उसे ग्राउंड पे लिया है।